की फोटो है जिसके बगल में दो गाड़ियां पार्क है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ।

जैसा कि मैं यह फोटो देख पा रहा हूँ।

बैंक का एटीएम या फिर मुख्य दरवाजा नजर आ रहा है।

जैसा कि मैं यह फोटो देख पा रहा हूँ कि--

जिसमें लोग काफी सही तरीके से--

इस इमेज को मैं देख पा रहा हूं--

हूं कि यह इमेज अमूल डेयरी का लिया गया है।

कि यह फोटो किसी तालाब की है।

दिख रहा हैहोल्डिंग बोर्ड पर पीपल्स हॉस्पिटल।

जैसा कि मैं देख रहा हूं इसमें काफी गेट --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं।

ग्राउंड फ्लोर पर रंगोली बनी हुई नजर आ रही है।

जो कि देखने में काफी सुंदर लग रही है।

के नाम से दुकान दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं इस फोटो को देख पा रहा हूँ।

और एक बड़ा सी टावर लाइन भी नजर आ रही है।

काफी पेड़ भी लगे हुए हैं।

जिसमें काफी मछलियाँ हैं।

जिसमें कुछ खरीदार भी नजर आ रहे हैं।

कि यह फोटो एक ज्वेलरी शॉप की है।

यह फोटो रात में ली गई है।